इस चित्र में हम देख सकते है की कई विद्यार्थी बैठे हुए है और कुछ लिख रहे है एक अध्यापक उन्हें समझा रहे है बोर्ड में लिख के और उन्हें एक्सप्लेन कर रहे है।

इस चित्र में हम देख सकते है ये बस स्टैंड पर खड़े लोग जा रहे है और बस पर खड़े लोग चढ़ रहे है और एक कंडक्टर भी खड़े हुए है ड्राइवर के --

इस चित्र में हम देख सकते है की कई बच्चे वहाँ पे कई बच्चे भुड़यों बुजुर्ग पंडित वहाँ पर खड़े हुए है और कुछ पूजा कर रहे है और सभी लोग उन्हें देख रहे है।

इस चित्र में हम देख सकते है ये एक जिम है जहाँ पे एक साल की एनिवर्सरी बना रहे है सेलिब्रेट कर रहे है और कई ट्रॉफियां लगी रखी हुई है लोगो को जीते हुए को पुरुस्कार देने के लिए।

इस चित्र में हम देख सकते हैं कि एक आदमी खड़ा हुआ है अपनी साइकिल रिक्शा से सवारी होती है उसको पकड़े हुए वो सवारी देते है लोगों की।

कुछ अ लाइक बारह बज रहे हैं और कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपने नंबर का।

और एक बैंक है और साम आगे एक सवारी जा रही--